इस फोटो में एक शेड दिख रहा है जिसका ढलैया हो रहा है और छत पे तीन चार मजदूर भी खड़े हैं।

इस फोटो में एक शॉप दिख रहा है जिसके दीवार का कलर सफेद है और ऊपर सीलिंग का कलर भी सफेद है।

इस फोटो में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग दिख रही है जिसके पिलर में बहुत सारा जंग लग गया है और पिलर काला काला भी हो गया है।

इस फोटो में सामने बुक शॉप दिख रहा है जिसके काउंटर पर कुछ बुक और कुछ पेने रखी हुई हैं दुकान के अंदर बहुत सारे सेल्फ रखी हुई हैं।

जिसके बाहर कुछ कुर्सी और टेबल भी लगे हुए हैं ढाबा के साइड में बहुत सारे बालू गिरा हुआ है।

बहुत सारे पंडित जी और एक इंसान फोन में बात कर रहा है सामने दीवार में भगवान जी का फोटो भी चिपकाया हुआ है।

इस फोटो में सामने एक बाइक का छोटा सा शोरूम दिख रहा है जिसके दीवार का कलर पीला है।

एक टीवी और दो तीन घड़ी भी लगा हुआ है सामने एक बहुत बड़ा काउंटर दिख रहा है।

इस फोटो में एक रोड दिख रहा है इस रोड पर तीन चार ऑटो खड़े हुए हैं और सामने एक ब्लैक कलर टीशर्ट पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस रोड के साइड में एक गोल घर दिख रहा है।

इस फोटो मे एक रोड दिख रहा है रोड के साइड में एक ब्लू कलर का डस्टबिन है।

उसकी साइड में एक रोहन चाय सेंटर है जहां पर चाय और कॉफी मिल रही है।

कंपाउंड के साइड में एक बहुत बड़ा स्कूल है जोकि व्हाइट और ग्रीन कलर से बना हुआ है स्कूल के छत पे तीन चार झंडा भी दिख रहे --

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रहा है जो कि ब्लू और वाइट कलर का है बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है।

और उसके साइड में दवाखाना लिखा हुआ है बिल्डिंग के अंदर तीन चार आदमी लोग खड़े हैं और कुछ औरतें भी दिख रही हैं।

दुकान के अगल बगल बहुत सारे घर और पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यहां पर दो तीन पेट्रोल की मशीने है और तीन चार व्हीकल खड़े हुए हैं।

आसमान में चारों तरफ कोहरा है और दूर कुछ पेड़ और पौधे दिखई दे रहे हैं।